बहोत ही सुंदर बनी हुई मकान दिख रही है।

लुकीटीरिया डिजाइन बहुत ही सुंदर किया गया यहां और आप देख सकते एकदम लाइन से इसमें लगाया गया है और साथ साथ ऐसा फील हो रहा है कि डस्टबिन की भी सुविधा की गई है।

के टेबल को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और सामने आप देख सकते है कि ब्लैक ग्लास लगा हुआ है और उसके बगल से गेट है और देख सकते है कि --

बड़ी मेडिकल स्टोर को बहुत बड़ा माना जाता है और ये न्यू --

लेकिन यह एक फोटो एक व्यक्ति द्वारा खींचा गया इसमें दुर्गा माता का भी फोटो दिख रहा है साईं सा--

साइड में एक पोल भी लगा हुआ है जीसमें इलेक्ट्रिक --

यह छठ पर्व में ही होता हैं और किसी पर्व में ऐसा नहीं देखा जाता हैं।